नीचे जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है।

दीवारे जादा है और खिड़की पर एक पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रही है।

बच्चे के पीछे वॉल पर बहुत सारा बैलून सजा के रखा है।

दो बरे घर है एक महल बनाया हुआ दिखाई दे रही हैं।

दाएँ तरफ काउंटर और ग्राहक सेवा सेंटर दिखाई दे रहे है।

सामने एक बड़ा सा महल दिखाई दे रही है।